क्लीनिक मुझे दांतों का लग रहा है दांतों का जैसे डेंटल क्लीनिक हो।

बड़ा ही आसमान में बिल्कुल साफ है धूप तेज खुली है हल्की हल्की आसमान में बादल है।

ये एक किराना स्टोर लग रहा है पतंजलि का बोर्ड लगा हुआ है उसपे योगी बाबा--

ये एक मंदिर है मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं बाहर एक बच्चा खड़ा है येलो टी शर्ट पेहने।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है ये एक गार्डन या पार्क जैसा लग रहा है जिसमें बच्चे खेलते--